कुछ ढूंढ के अंदर फ्लावर में बने हुए और आसपास बहुत सारे गुब्बारों से यह गोलाई दी गई है यहां पे दो तीन लड़कियां भी है।

और टेबल है डार्क कलर की यहां पे बहोत सारी मेज है और बहोत सारी चेयर रखी हुई है और यहां इनके के अलावा कोई भी नहीं --

यहां पे बादल दिखाई दे रहे हैं साफ सुथरा मौसम दिख रहा है और हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था बीकानेर लिखा हुआ है।

यहां पे लोग अपना शिक्षा संबंधित सारी डिस्कस करते हैं अपने प्रॉब्लम लेकर आते हैं यहां पर --

आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे और एक मंदिर भी है और घर बने हुए हैं सीमेंट के उनके ऊपर सिंटेक्स की टंकिया भी रखी हुई है।

यहां पे गनेश जी सरस्वती माता कुबेर जी कान्हाजी--

टेडी बियर और भगवान लक्ष्मी माता की यहां राधा कृष्ण जी की --

यह सीमेंट का घर बन रहा है यहां पे और छोटे छोटे अलग अलग तरीके के गमले लगे हुए हैं ये --

यह एक स्टेशनरी की दुकान है यहां पे रबर पेंसिल शॉपनर भड़ते टेप --

फेविक्विक कॉपियां किताबें पासबुक्स और छोटे बच्चों के स्टिकर्स सब चीजे मिलती है यहां पे।

यह एक घर की फोटो है यहां नीचे फर्श बना हुआ है बहुत सारे ऊपर पंख लगे है चार पंखे लगे हुए हैं।

और एक बाइक भी खड़ी है और यहां आस पास कोई दिखाई नहीं दे रहा है मौसम भी एक दम साफ दिखाई दे रहा है।

यहां व्हाइट और रेड कलर की बनी हुई है यहां पास मे बहोत सारा कचरा दिखाई दे रहा है।

बने हुए हैं इनके रहने की जगह है यहां पे और सबने पुलिस वाली ड्रेस पहन रखी है।

एस_के कुमार कलेक्शन यहां पे हेडिंग डाल रखी है और ऊपर फोर जी_बी शॉपर --

और यह पिक्चर आदमी और बच्चे है पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं मंदिर भी बना हुआ है।

नोटबुक भी मिलती है पेंसिल रबर स्केच कलर मोम कलर लकड़ी कलर पता नहीं क्या क्या चीजें यहां पे रखी हुई है।